यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा जान पड़ रहा है कि यहां पर कोई डांस क्लब है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा जान पड़ रहा है कि यह एक बहोत लम्बा कॉरिडोर है यहाँ पर --

और ऊपर में प्लेटफार्म जैसा है।

बहुत बड़े बड़े पत्थर भी रखे गए हैं। अच्छा लग रहा --

देखने से ऐसा जान पड़ रहा है कि यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का --

कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं। कुछ लोग सीढ़ी के ऊपर हैं।

और थोड़ा सा दूर पे बहोत सारे फल --

कांच के अंदर से दिखाई दे --